पीछे के साइड में पेड़ पौधे लागे हुवे है सामने से रोड निकाला हुवा है रोड के ऊपर बहुत सारे बिजली के खंबे लगे हुवे है वो घर बने हुवे है.

यह एक पार्क है जहा पार्क के अंदर बहोत सारे पिसल पट्टियां झूले बच्चों के खेलने के लिए कुछ व्यक्ति आस पास खड़े है छोटी छोटी शॉप्स लगी हुवी है जाली की मदद से बाउंड्री बनाई गयी है